बीच में एक तालाब है जिसके पानी में काई जमा हुआ है और तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ है | आसमान साफ दिखाई दे रहा है।

और एक इसमें एक युवक है जो फोटो खींचा रहा है व-वही पे पास एक दान पेटी भी है और ऊपर भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी पीली प्रतिमा है।

इस चित्र मे एक ऊंची इमारत दिखाई दे रही है। जिसमे कई सारी खिड़किया हैं। बाहर निक दरवाजे के पास सीढ़िया है।

घर कम से कम दो मंजिला है और रैलिंग है।

एक युवक मेज के ऊपर कुछ काम कर रहा है। साथ ही यहां कुछ कुर्सियां लगी हुई है।

कार्पेट है उसका रंग लाल है और फूल से सजाए हुए हैं।

दूर कुछ बोहोत सारे पेड़ पोधे हैं और बहोत अ एक पहाड़ भी है बैकग्राउंड में और कुछ आदमी भी खड़े है। वो खा रहे है मटर --

मैदान के चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और मैदान की जो घाँसे है वो सूख चुकी हैं।

इस चित्र में हमे एक चौपहिया वाहन दिखाया गया है। जो कि एक अ दो मंजिले मकान के बाहर खड़ा है।

मकान थोड़ा पुराना दिख रहा है और वाहन जो है वो काफी नया दिख रहा है और ये काफी सुंदर वाहन है।

इस चित्र में हमें एक चोपहिया वहान कार दिखाया गया है। जो की सुजुकी मतलब सुजुकी का है और इसका नंबर है यूपी सिक्स फाइव एचटी थ्री ऐट थ्री वन ।

एक ये घर के एक बाहर अ दिखाई रखा अ पार्क किया हुआ है और घर के अंदर कुछ पौधे हैं और शायद करी प्लांट है।

इस चित्र में हमें वाराणसी विकास प्राधिकरण दिखाया गया है और यहाँ पास ही पंजाब नैशनल बैंक का साइन बोर्ड लगा हुआ है।